की है और काफी अच्छे से डेकोरेट की गयी हैं बोहोत ही सुन्दर सा व्यू है ये पूरा।

जो की उस पहाड़ को बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे --

फिश काफी सारी है और अलग अलग टाइपस ऑफ़ यहाँ पे फिश है ।

स्टेज के बेक साइड में ब्लैक कलर के बड़े-बड़े कर्टेन लगे हुए हैं।

बहुत बड़े बड़े आस पास पेड़ पोधे हैं |

साइड में टेलीफोन कुछ लैपटॉप पी.सी. है और --